हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं बहुत सारे सीढ़ियां भी नजर आ रही है एक लड़का खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और रेड कलर का डेमो भी खड़ा नजर आ रहा है।

तीन लड़ एक लड़की दो लड़के खड़े हुए नजर आ रहे है एक लड़का के हाथ में पेन नजर आ रहा है।

ब्लू कलर के कुछ नजर आ रहे हैं हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

देख सकते हैं सामने साइकल गाड़ी खड़े हुए नजर आ रहे एक ब्राउन कलर के शर्ट पहने हुए अंकल नजर आ रहे--

हरे-भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं। बड़े-बड़े बिल्डिंग वगैरह भी नज़र आ --

सामने दो लोग नजर आ रहे हैं बस नजर आ रही जैसे बस का कलर ग्रीन येलो व्हाइट नजर आ रहे हैं।

सामने बहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है कांच की खिड़कियां बनी हुई नजर आ रही है छोटी छोटी खिड़कियां भी नजर आ रही है ग्रे --

ब्लैक कलर के कोट्स नजर आ रहे हैं जिम का सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने हॉल नजर आ रहा बहोत बड़ा टी_वी लगाया हुआ नजर आ रहा सामने दो अंकल आते हुए नजर आ रहे बगल से दो अंकल खड़े हुए नजर आ रहे--

बहुत सारे घर नजर आ रहे जिसपे बड़े बड़े खिड़कियां नजर आ रही है।

सामने नीला कलर का साड़ी नजर आ रहा--

व्हाइट कलर की दीवाल वगैरे नजर आ रही खिड़कियां नजर आ रही--

के सामने ऊपर बोर्ड में रायपुर लिखा हुआ नजर आ रहा--

बगल में जय मेडिकल एंड्स कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ब्लू कलर की शटर नजर आ रहा है। एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही --